एक कार भी जाते हुए दिख रही है और एक बड़ी बस का पीछे का व्यू दिख रहा है।

यहाँ पर एक शॉप दिख रही है।

ये कुछ पास में ऑरेंज और ब्लैक कलर की बाउंड्री की दीवार दिख रही है और सामने की तरफ बहोत से बड़े पेड़ भी लगे हुए दिख रहे है।

और एक कॉपी में लिख रहे है जिन्होंने --

और एक दिवार बनी हुई दिख रही है लाल और ऑरेंज कलर की छोटी ही दिवार है वो --